ये एक बैडरूम है। ये बोहोत सुन्दर है। इसमें बेडशीट वाइट कलर की बिछी है। प्रिंटेड बेडशीट और इसके ऊपर प्रिंटेड कपड़ा रखा है। पीछे वो पर्दे लगे हुए हैं बोहोत सुन्दर है और इसमें एल सी डी लगी हुई है --

ये एक परचून ये एक शॉप है। बहुत बड़ी शॉप है। यहाँ पे अलग अलग सामान रखा हुआ है और यहाँ पे बहुत सारा सामान रखा गया है। कुछ नीचे पड़ा है कुछ आलमारी में रखा है और कुछ टेबल पे रखा है।

ये एक हिरन है जो बड़ा इना हिरन है और इसमें जो कान है बड़े बड़े और ये यहाँ पे ब्राउन ब्राउन मिट्टी है | कुछ हरी हरी घासें भी है ।